मकान नजर आ रही है स्कूल के जैसे दृश्य नजर आ रही है जिसकी पिलर --

एक पुरुष है जो की सफेद रंग का टी शर्ट और भूरे रंग का पेंट पेहना है वो पाइप के थ्रू धो रहा है।

का डिजाइन जो है लाल पे रखा गया है बाहर में एक पोल नजर आ रहे--